यहाँ चारों तरफ से बाउंड्री की गई है।

यह तस्वीर एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर की है।

और कुछ तेलेगु भाषा में लिखा गया है ।